मुझे सजावट दिखाई दे रही है।

उ में मुझे एक मैदान दिखाई दे रहा है।

यहां मुझे कुछ लोग दिखाई दे रहे--